ये देख सकते हैं कि यहां पर एक--

सामने की पिक्चर में हमें ये दिखाई दे रहा है।

बहोत बड़ा सा घर है जिसमें बहोत बड़ा मस्जिद--

घर बना रहे है कुछ लोग साथ में जुड़कर।

इसमें बहोत सारे सुंदर सुंदर--

इस पिक्चर में हमें ये दिखाई दे रहा हैं कि यहां पर एक बहोत बड़ा लाल रंग का--